ये कुछ नीले रंग की पन्नी सा सजावट करी जा रखी है।

यहां पर हिंदी में निशांत गारमेंट्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

व नीचे की तरफ बोर्ड लगे हुए हैं जिनपर स्कूल ड्रेस मिलता है दिखाई दे रहा है लिखा हुआ अंदर की तरफ दो आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

साइड में गमला दिखाई दे रहा है जिसके बीच में एक पौधा दिखाई दे रहा है।

आगे की तरफ शीशे का एक गेट व कुछ विभिन्न विभिन्न गेट दिखाई दे रहे हैं।

वे पीछे की तरफ एक नीले रंग की लाइट जलते हुए दिखाई दे रही है व स्टेज पर काले रंग का पेंट हो रखा है।

और आगे की तरह पर पहाड़ दिखाई दे रहा है। वे बहुत सारे आदमी रोड पे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां सामने की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर हिंदी में प्राथमिक उपचार केंद्र लिखा हुआ है।

ऊपर टीन की छत पड़ी हुई है व दो आगे दो मोटरसाइकिल और एक साइकिल खड़ी हुई है।

चारो तरफ कुछ बैठने के लिए सीढ़ियां बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

जो विभिन्न विभिन्न रंगों की हैं जिनके किसी का रंग पीला व किसी का रंग नीला है।

व ऊपर की तरफ कुछ रंगदार बना हुआ है।

तालाब में बैठा बीच में आदमी एक ने सफेद कलर की टी शर्ट पहनी हुई है व नीचे की तरफ एक ट्यूब पड़ी हुई है जो ब्लैक कलर की है जिसके ऊपर एक लकड़ी है और साइड में आदमी बैठा हुआ है।

यहां पर एक रोड जाते हुए दिखाई दे रही है। सामने एक इस स्कूल दिखाई दे रहा है जिसपे एस_टी_ए_सी कनवट स्कूल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये स्कूल के ऊपर कुछ झंडे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जो सफेद हरे लाल और नीले कलर के हैं।

साइड में दीवाल पर एक सफेद कलर से चिन्ह बना हुआ है।

एक आदमी मोटरसाइकिल पर जाते हुए दिखाई दे रहा है मैं साइड में एक सफेद कलर की कार खड़ी है और एक साइड में ब्लैक कलर की कार खड़ी है।

ऑफिस के अंदर दो चार चेयर पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

एक आदमी ने हाथ में कुछ थैला लिए हुए हैं जिस पे फूल बना हुआ है।

साइड में एक लकड़ी का गेट दिखाई दे रहा है व ऊपर की तरफ एक प्लाई दिखाई दे रही है।

साइड वाले लड़के ने ऑरेंज कलर की व मटियाले कलर की टी-सल्ट डाले हुए है। पीछे की तरफ जिम के इक्विपमेंट दिखाई दे रहे हैं।

उसने पीले कलर की शल्ट व नीले कलर का कच्छे पहने हुए हैं।

एक आदमी ने सफेद कलर का सर पर है बांधे हुए है कपड़ा।

ऊपर की तरफ हिंदी में कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम मेरठ दिखाई दे रहा है।

साइड में हिंदी में लिखा हुआ और कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम दिखाई दे रहा है।

ये तो फोन चलाते दिख रहा है नीचे की तरफ कुछ स्टील की चीजें रखी हुई हैं।

सामने की तरफ मैदान में बहुत सारे आदमी व औरतें खड़े हुए दिखाई दे रही हैं।

और ऊपर की तरफ एक पर्दा दिखाई दे रहा है एक ट्यूबलाइट दिखाई दे रही है।

की तरफ एक बल्ब जलते हुए दिखाई दे रहा है ओ ऊपर की तरफ एक और पंखा लटके हुए दिखाई दे रहा है।